दो औरत बैठी हुई हैं।

बहुत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

कुछ लोग मछली को खरीद रहे हैं।

बहुत सारी मछलियां हैं ।

ट्रेन का इंजन नजर आ रहा है।

जो किसी प्लेटफार्म पे खड़ी है ट्रेन ।

यात्रियों के बैठने के लिए।

डांस करतीं हुई नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में एक आदमी नजर आ रहा है।

खाली मैदान दिख रहा है।

पटना ड्राई फ्रूट लिखा हुआ है।

कुछ आदमी ड्राई फ्रूट्स खरीदते नजर आ रहे हैं।

फूड ट्रैक लिखा हुआ है।

कुछ लेबर और मिस्त्री काम करते नजर आ रहे हैं।

इनमें से एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है।

किसी ऑफिस का या किसी जगह का --

वेटिंग एरिया नजर आ रहा है।

बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

जो लाल रंग का कुर्ते पहने हुए हैं।

ये तस्वीर किसी मार्केट का समझ में आ रहा है।

दुर्गा जी के आसपास और भी प्रतिमाएं हैं।

आदमी नजर आ रहा है।

कुछ गमले रखे हुए हैं।

इस घर के आगे एक पीले और हरे रंग का बाउंड्री है।

एक लड़की रोड पे नजर आ रही है ।

एक घर बहुत पुराना भी दिख रहा है।

बहुत ही घने पैर --

किसी का तस्वीर भी टांगा हुआ है।

घाट को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है।

बहुत सारी लड़कियां आस पास खड़ी हैं।

घरों के बीच में एक खुला सा मैदान नजर आ रहा है।

अलग अलग कलर के घर भी नजर आ रहे हैं।

एक व्यक्ति पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है।

ऐसा लग रहा है।

यूनाइटेड इंडियन इन्सुरन्स कंपनी लिमिटेड है।

एक स्कैनर भी नजर आ रहा है।

पासी में एक इलेक्ट्रिक खम्मा नजर आ रहा है।

सूर्य अस्त हुआ दिख रहा है सूर्य की रोशनी --

इस तस्वीर में एक कार नजर आ रहा है।

पानी के टंकी के बाजू में--

एक नीले रंग का प्लास्टिक रखा हुआ है।

रूम के दोनों साइड बेड लगे हुए हैं ।

इस तस्वीर में एक गार्डन नजर आ रहा है।

तस्वीर में बहुत सारी खिरकियाँ नजर आ रही हैं जिसमें--

पार्क में बहुत सारे पेर लगे हुए हैं।

तस्वीर में बहुत सारे बॉक्स लगे हुए हैं।

फल के दुकान के पीछे एक बड़ा सा पेर नजर आ रहा है।

गार्डन के आस पास बहुत सारे पेर नजर आ रहे हैं।

घर के आस-पास बहुत सारे घर हैं।

घर के ऊपर छत पे कुछ ईंट नजर आ रहा है।

ये तस्वीर किसी वाटर पार्क का तस्वीर है।